यहां मुझे एक खंभा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे दो महिला दिखाई दे रही है।

यहां मुझे पर्दे दिखाई दे रहे हैं।